और इन दोनों स्टैचू के गले में फूलों की माला डाल रखी है।

ये किसी फंक्शन की फोटो है।

और इसके आगे बहुत सारी औरतें हैं वो--

इस बिल्डिंग में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और--

ये डेली युज के लिए कोई शॉप है जिसमें डेली युज वाला सामान मिलता है।

कि इस फोटो फ्रेम बनाने वाली शॉप है जिसमें एक टेबल है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रेम्स रखे हुए हैं।

और पीछे की साइड और भीं चौखट और ज--

यहां पे कुछ डेक्सेज लगा रखे हैं।

और जिम के पीछे एक बिल्डिंग भी दिख रही है वाइट कलर --

और इसके सामने ही कोई बहोत बड़े पेड़ बड़े पेड़ भी है।

और उसके ऊपर एक कोई बड़ा सा बैनर भी लगा रखा है।

और पीछे गाड़ी के पहिए जैसा कुछ है।

ये किसी म्यूजियम की फोटो है।

और इसमें कुछ अलग अलग तरह के एंटीक चीजें रखी हुई है।

और यहां पे सबसे ऊपर एक पोस्टर लगा रखा है एडवरटाइजिंग के लिए और उसे पोस्टर पे फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट किया गया है।

और इसमें बहोत सारे बड़े बड़े टावर भी दि--

गैस वगैरा के और इसके साथ ही और भी मशीन्स वगैरा रखी हुई है।

इसमें अलग अलग कलर की फ्लावर से एंट्रेंस गेट को सजाया हुवा हैं।

एंट्रेंस पे कुछ दिलों की डिजाइन भी बना --

और इसमें कुछ चार पांच बोट जैसी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

जिसमें बहो त सारे गेस्ट है और एक अ सर --

जिसपे अलग अलग तरह की चीजें रखी हु--

का पोस्टर भी है लाइफ इज फुल ऑफ ड्रामा और इसके नीचे मछलियों का जो भी है।

जी बहुत सारी टेबल्स हैं और उसके साथ चेयर भी हैं।

जिसके ऊपर सीमेंट का अह डैम बना रखा है।

ये कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग इन्होंने दिखा रखी है।

और इस बिल्डिंग के बीच में ही एक सिल्वर कलर से कुछ डिजाइन बना रखा है।

ये कोई एक होटल या ढाबे जैसा कुछ दिखा रखा है।